विंटर जैकेट्स दिखाई दे रहे हैं। हेलमेट दिखाई दे रहा है।

रैक दिखाई दे रहे हैं। जीन्स --

पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ फूलों की शॉप भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

एंड व्हाइट कलर की रिबीन दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट टाइल्स दिखाई दे रही है। पीछे व्हाइट कलर का --

कारपेट वॉलपेपर दिखाई दे रहा है।

एंड लेंस दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है एण्ड एक लेडी दिखाई दे रही है।

एंड कुछ कंकड़-पत्थर दिखाई दे रहे कचरा दिखाई दे रहा हरी घास दिखाई दे रही।

यहाँ पर एक ऑटो दिखाई दे रहा है।

गेट दिखाई दे रहा है। एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। व्हाइट कलर की दीवाल दिखाई दे रही है।

पिंक कलर की रिबन दिखाई दे रही हैं। पिंक --

दे रहे हैं। फैन दिखाई दे रहे हैं। लाइट दिखाई दे रहे हैं। एक वाच दिखाई दे रही है।

यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

पटरी दिखाई दे रही है। कंकड़-पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर बसें दिखाई दे रही हैं।

सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही हैं। खुला आसमान दिखाई दे रहा है। बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं।

पीने के पानी की टंकी दिखाई दे रही है। खुला आसमान दिखाई दे रहा है। बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ब्लू कलर का एक शटर दिखाई दे रहा है।

ढेर सारी बस दिखाई दे रही हैं। व्हाइट एंड ब्लू एंड रेड कलर की। एक पेड़ दिखाई दे रहे है। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेंच दिखाई दे रहा है। क --